ये साइट में एक बॉक्स रखा हुआ सामने फूल दिखाई दे रहे हैं फूल का कलर सफेद दिखाई दे रहा है।